एक जिम जहाँ खूबसारे गुब्बारे लगे हुए है गुब्बारे में --

हार्वेस्टर का रंग हरा है। हर्वेस्टर में काले रंग की कांच लगी हुई है।

काउंटर के पीछे कुछ बैनर्स लगे हुए है बैनर्स में कुछ बच्चो के फोटोस है।

कुछ बाइक खड़ी है भवन के सामने एक सफेद शर्ट पहना हुआ खड़ा है।

कमरे के बगल में एक आईने लगा हुआ है। जिसमे कुछ बैलून लगा--